फूलों की माला है और दरवाजा दीवारे है दीवारों का रंग सफेद है और--

इस दृश्य में नदी को दिखाया गया है उसमें पानी है जिसके आसपास--

इस दृश्य में हिरणों को दिखाया गया हैं।

यहां पर बहुत सारे हीरन है हिरनों का कलर भूरा है।

जहां पर एक बैनर चिपका हुआ है बैनर का कलर सफेद और लाल और पीला है।

इस तरस मे मंदिर दिखाया गया है जो की श्री दिगंबर रंजन मंदिर है।

हल्का और लाल है और हल्का गुलाबी है।

खिड़कियां है दरवाजे है और तार है आसमान है और खिड़कियां है।